जमीन पे काफी सारी प्लास्टिक की लाल रंग की कुर्सीयां पडी हुएं है।

और दोनों किनारों के तरफ काफी सारे बड़े बड़े पेड़ लगें हुये है।

रोड है रोड के किनारे एक दुकान है दुकान के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है।

और एक छोटा सा मकान बना हुआ है जिसके ऊपर एक छोटी सी छत रखी है जो की लाल रंग की है।

एक दुकान है दुकान में लकड़ी की रैक बनी हुई है।

मेज के पीछे की तरफ एक कुर्सी रखी हुई है जो की लाल और काले रंग की है।

और सामने की तरफ शीशे लगी हुए है और एक भूरे रंग का सोफा पड़ा हुआ है।

कमरे के बाहर एक लाल रंग का पत्थर का बोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर काले रंग का एक पोस्टर लगा है उस पर लिखा है बुंदेलखंड होलीडे होम एंड बोट क्लब --